इस इमेज में यहां पर एक बड़ी सी इमारत दिखाई दे रही है और यहां पर एक बोर्ड पर इंडियन ऑयल लिखा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर है गेराज दिखाई दे रहा है जहां पर देखीगा कहीं सारा सामान पड़ा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज मे यहां पर दो बिल्डिंग दिखाई दे रही है और यहां पर दिखायेगा सामने के पार्क भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक काउंटर दिखाई दे रहा है जहां पर दीवार पर फिट ओ क्लाक लिखा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक टैटू की दुकान दिखाई दे रही है जहां पर ऊपर टैटू नशा लिखा नजर आ रहा है।

इस इमेज में सामने एक मस्जिद दिखाई दे रही है और बाहर मुसलमान औरतें खड़ी हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर एक फिश मार्केट दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ लोग मछली बेचते नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर घंटाघर दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक बड़ी सी इमारत दिखाई दे रही है और यहां पर देखिएगा ग्रिल्स हॉस्टल लिखा नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक स्कूल की गैलरी दिखाई दे रही है जहां पर कुछ बच्चे अपना प्रोजेक्ट बनाते दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक रूम दिखाई दे रहा है सामने डबल बेड बिछा हुआ नजर आ रहा है।

इस ईमेज में यहां पर हाईवे दिखाई दे रहा है जहां पर टेंपो ऑटो रिक्शा चलाते नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर एक मस्जिद दिखाई दे रही है और बाहर कुछ लोग खड़े हुए नजर आ रहे --

इस इमेज में यहां पर एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है और यहां पर पेड़ के नीचे दो पुलिस वाले नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक मार्केट दिखाई दे रहा है जहां पर एक लेडिस मुंह पर मार्क्स लगी नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर एक कार दिखाई दे रही है। एक साइड में लड़का भी खड़ा नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक बड़ी सी इमारत दिखाई दे रही है और नीचे कुछ लोग खड़े नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक क्लास रूम दिखाई दे रहा है जहां पर बेंचेज और सामने व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है सामने यहां पर एक बड़ा सा गेट भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर सब्जी का ठेला दिखाई दे रहा है जहां पर एक लड़का सब्जी बेचता नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक बोझ सर्विस लिखा हुआ है और कुछ आदमी खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक फैक्ट्री दिखाई दे रही है जहां पर आग जलती नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर एक बड़ी सी इमारत दिखाई दे रही है नीचे कार भी खड़ी नजर आ रही है।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

इस इमेज में यहां पर एक मस्जिद दिखाई दे रही है बाहर कुछ मुसलमान भाई खड़े नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक पार्क दिखाई दे रहा है और सामने यहां पर बैठने की बेंच भी नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर एक कमरा दिखाई दे रहा है जहां पर दीवारों पर सुंदर कलर नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक चर्च दिखाई दे रहा है और नीचे कुछ लोग यहां पर खड़े नजर आ रहे हैं।